याहा देखिये एक गार्डन है और इसमें देखिये जो हम काफी ग्रीनि ग्रीन री नजारआ रही है।

और काफी संख्या में यहां पर मुझे सूट नजर आ रहे हैं।

ऐ देखिए यहां पर जो है एक बस खड़ी हुई है अः जो अः--

अ जूलरी देख रहे है और जूलरी परचेस करने आए हुए है और जो है जुलेर जो है जो --

अ अलग अलग तरह के डिजाईन अपने कस्टूमर को दिखा रहा है।

ये देखिये मोबाइल की काफी बड़ी शॉप नज़र आ रही है जिसमे दिफ्फ्रेंट दिफ्फ्रेंट --

हेडफोन भी देखने के लिए मिल रहे हैं और स्पीकर्स भी देखने के लिए मिल रहे।

ये देखिये बच्चो की क्लास है जिसमे बच्चा जो है अपना अपना जो है ड्राइंग का काम कर रहे है और ड्राइंग बना करके बैग --

बांस के ऊपर चेरी लगी हुई है और दूसरी जो है स्ट्रोबेरी है स्क्रीन में जिसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी लगे हुए हैं और तीसरी जो है।

ये देखिए कोई बहुत बड़ा गार्डन है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स लगे हुए है जिसमें रेड कलर के और येलो कलर के और व्हाईट कलर के--

पीछे क जेंट्स खड़ा है और पीछे दो बच्चे भी खड़े है और ऐल_इ_डी लाइट्स भी लगी है।

ये देखिए होटल उं के रूम की फोटो है जिसमें--

अ गाड़ी खड़ी हुई है जिसमें बच्चे बैठ करके एन्जॉय करने आते होंगे और यहाँ पे बच्चों के गिफ्ट्स भी नज़र आ रहे हैं।

ये देखिये ये भी कोई जिम है जहा पर--

हा हम्म जोकि यहाँ पर है यहाँ पर जो है बहोत सारे पेसेंजर यहाँ पर जाने के लिए तयार है।

और इन्होने जो है अ कुछ बॉयज ने जो है यूनिफार्म भी पे--

पार्लर है जहा पर कुअलीटी वोल्स की ही आइस क्रीम देखने के लिए मिल रही है।

ए देखिये कोई अ चंडीगढ़ का कोई फेशन जॉन है जहाँ पर उम्म म बच्चो के--

ये चंडीगड़ में विडियो गेम्स और इलेक्ट्रॉनिकस --

मतलब यहाँ पर और यहाँ पर देखिये हैप्पी प्लेस भी लिखा हुआ है मतलब यहाँ पर ज --

यह देखिये वो में वाटरपार्क टाइप बना हुआ है जिसमे बहोत सारे जो लोग है--

अ श्रधालु जो है दर्शन करने आये हुए है मत्था टेकने आये हुए है।

ये देखिये बच्चो की बहोत बड़ी टॉयज की शॉप है जहा पर अम्म बॉल --

अ कु यहा की गुरुवाणी भी सुनने के लिए--

यह जो है काफी अंदर करके ये शॉप नजर आ--

ये देखिये ओप्पो मोबाइल की है शॉप है जहा पर--

यहा पर स्टेस्ट अनस्तेस्ट दोनों टाइप --

और ऐसे इसको डेकोरेट किआ गया है और यहाँ पर जो वन पर्सन भी खरा हुआ है जिसने कोट पैंट पहना हुआ है।

ये देखिए- बहत बड़ा मंदिर बना हुआ है जिसमे बहत सरे भगबान जी के प्रतिमा प्रतिमा है और यहाँ पर जो है--